चित्र मे एक इमारत दिखाई दे रही है आगे स्टूल रखे हुए है स्टूल के पास एक लड़का खड़ा है ऊपर बड़े बड़े अक्षरों मे--

बोर्ड लगे हुए है सामने एक बड़ा टावर दिखाई दे रहा है खंबे से कई सारी तारे जुड़ी नजर आ रही है।

ऊपर पंखा दिखाई दे रहा है आजू-बाजू रंगी-बिरंगी तोरंग नजर आ रहे है।

चित्र मे एक नदी दिखयी दे रही है नदी मे बडे बडे पथार नजर आ रहे है आजु बाजु हरि घास नजर आ रही है सामने छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है

चित्र में कुछ बच्चे नजर आ र है हैं बच्चों के सामने सामान रखा हुआ है आगे दो औरतें खड़ी है पीछे बड़ी बड़ी खिड़कियां दिखाई दे--

चित्र मे एक बड़ा हॉल दिखाई दे रहा हैं स्टेज को गुब्बारों से सजाया हुआ है सामने एक सीढ़ी रखी हुई है।